इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है की ये कोई गाड़ी का गैराज़ है जहाँ पे बहोत सारी गाड़ियां रिपेरिंग के लिए आई हुई है यहाँ --

साईकल हैं। बच्चों के लिए भी छोटी-छोटी साईकलें है और बड़ो के लिए भी साईकलें हैं।

यहाँ पे बलरामपुर जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है यहाँ पे एक एम्बुलेंस है।

फूल का माला है और यहाँ मोंगरे का भी माला बना हुआ है यहाँ पे बहोत सारी --

ये जगह बहुत सुंदर लग रहा है।

टेबल्स और कुर्सियां लगी हुई है यहाँ पे झालर लाइट --